और यहाँ पर छोटे छोटे लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

और ये एक टेबल पर रख --

ये एक नदी में कश्ती दिखाई दे रही है जो उपर रस्सी दिखाई दे रही है और सामने बहोत सारे --

दिखाई दे रहे है। अंडे की ट्रे दिखाई दे रही है। यह एक स्टे फ्री पैड दिखाई दे रहे है। कोलगेट है।

दो जगह पर घांस दिखाई दे रही है आसमान दिखाई --

इसके बाहर बिल्डिंगे दिखाई दे रही है बहोत सारे छोटे- मोटे --

छोटे ऊँचे-नीचे घर दिखाई दे रहे हैं। छोटे-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है और यहाँ पे बहोत ज्यादा दिखाई दे रहा है है। --

ऐ बरफ में एन्जॉय कर रहे --

यह इसकी मशीन चल रही है। कार के दरवाजे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोहे की चीजे दिखाई दे --

ये दो गधे दिखाई दे रहे है यहाँ पर इनके मुँह --

ये एक घर दिखाई दे रहा है। जिस घर के अंदर एक स्कूटी और एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर बहोत सारे तार दिखाई दे रहे हैं इसके बालकनी --

है एक उसमे अनानस और कद्दू लिया हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक पुस्तकालय का दरवाजा दिखाई दे रहा है जिसमें जो हल्का सा खुला हुआ है और इस --

अल ताला लगा हुवा ताला लगा हुवा दिखाई दे रहा है। सामने निचे डोरमैट बिछा हुवा दिखाई दे रहा है। पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

औ इसके दिवारों पर ग्रीन कलर का पेंट ह्वा दिखाई दे रहा है औ दरवाजे पर --

बैठे रहे है। किताबें दिखाई दे रहे है। एक शख्स कुर्सी पर बैठा हुवा दिख --

एक शक्श जाता हुआ दिखाई दे रहा है औ कुछ दिखाई दे रही है। बहुत सारे पे दिखाई दे रहे है। मिट्टी --

बाते करते हुवे दिखाई दे रहे है और सामने बहोत सारी --